यहां पर सभी इलेक्ट्रिक इक्विप अह इक्विपमेंटस लाइट बल्ब फ्रिज ।

और होटल वगैरा भी फास्ट फुड के दुकान भी है।

दाल चीनी रेस्टोरेंट है ये हमारे कटिहार के--

यहां सुमित ऑटो सर्विसिंग सेंटर में टेम्पों

महिला कॉलेज यानी महिला कॉलेज ही है। जो कि आपको यहां पर महिला की ही सिर्फ पढ़ाई होती है।

वो बहुत ही अच्छे काम करते हैं और यह इक्विपमेंट ऐसी इक्विपमेंट है।